इस फोटो में हमें एक घास का मैदान दिख रहा जिसमें एक बकरी का बच्चा बैठा हुआ है।

लाइन में लाइन दोनों साइड चेयर रखे हुए हैं।

लाल कलर का रिबन से चारों तरफ उसको घेर के रखा है।

स्कूल का एक बड़ा गेट दिख रहा है येलो कलर का एक गेट है।

झरना ऊपर से आ रहा है बहोत सारे पत्थर दिख रहे हैं।

फोटो में हमें दो टेंपल जैसे दिख रहे हैं।

एक ऊंचा बैठने का जगह दिख रहा है उसमें सीरिल लगा हुआ है।

बहोत सारे टायर्स लगे हुए हैं।

उधर एक चेयर रखा हुआ है बैठने के लिए एक ग्लास का टेबल है।

लग रहा है रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे है।

एक औरत ब्लू कलर की ड्रेस में वेट कर रही है।

यहां मसाज थेरेपी दिया है।

इस फोटो में हमें एक लोहे का ब्रिज दिख रहा है।

यह ब्लू कलर का बस है इसमें येलो कलर का नंबर प्लेट है।

बहुत सारे गच्छी है बैठने के लिए येलो कलर का सीट है।

इस फोटो में हमें एक बार्बर शॉप दिख रहा--

एक स्कूटी पार्क है उसका बाउंड्री रेड और वाइट कलर का है।

इनमें में एक कच्चा घर है बंबू का एक वाल है।

उसके पीछे खाली मैदान है बहुत सारे गच्छी भी लगे हुए है।

सामने मे एक दुकान है।

इसमें मोबिल के डब्बे हैं बहुत सारे।

बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।